इध देख सकते हो एक पेट्रोल पंप हैं जो फ्यूल भराता है सब गाड़ी में।

मंदिर का कलर हैं ब्लॅक कलर सोडि ! रेड कलर ।

एक सफ़ेद धोती पहने हैं बोहोत ही अच्छा लग रहा हैं दिखने में बोहोत ही खूबसूरत बोहोत ही अच्छा सुन्दर बोहोत ही अच्छा।

जो सामने एक रिक्शा है। एक पेटी है। एक लोग दिख रहा है। पेटी में कुछ श्श उतर रहा है। एक बाँस है आगे।

ये देख सकते हो एक बड़ा वाला पुराना ताज महल हैं जो इधर आरडीएफसी गार्डन हैं।

जो गार्डन बोहोत ही पुराना है। बोहोत ही अच्छा लग रहा हैं देखने में ये गार्डन ।

जो टाटा कंपनी है सामने लोहे का रेल लगा हुआ हैं।